और इस मिस्त्री के पास कई प्रकार प्रकार के औजार रखे हुए हैं।

और इस मंदिर के अगल बगल कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए है और कुछ लोग इस मंदिर की पूजा करने आते हैं।

ये एक टाकीज का चित्र है और इसमें कई सारे पोस्टे --

लगी हुई है और इसमें कई सारे मुविया लगी हुई है और इधर कई सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और अगल बगल बहुत सारे लोग आपस आपस में बात कर रहे हैं।

पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और कुछ लोग इस ग्राउंड में घूमने आते हैं और लोग अपने ग्राउंड में --

और लाइट वगेरह लगे हुए हैं और इस घर में कई एक सुपा --